यहा उसकी दिखाई दे रही ब्लॅक कलर की दिखाई दे रही यहा पर एक आदमी दिखाई दे रहा जाते हुए यहा पर एक स्कूटी खड़ी हुई यहा पे दो काले कलर की यहा पर पेड़ पौधे लगे हुए है यहा पर बाजुमे वृक्ष लगी हुई उसके नीचे बहोत सारी बाइक दिखाई दे--

एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। सफेद कलर का है। यहा पर टी कप छपा हुआ है। यहा रेड कलरों मे लिखा हुआ है। कॉफी और ब्लॅक कलर मे लिखा हुआ है। मारवेल यहाँ पर टी सेट डरा हुआ है।

उपर आसमान दिखाई दे रहा है जो नीले और काले कलर का है यहा पे मुझे देखने में दिन का सीन लग रहा है।

यहाँ आगे सोफ़े रखी हुई है रेड कलर की है पीछे बहुत सारे खुर्चिया दिखाई दे रही है यह हॉल पिंक कलर का दिखाई दे रहा यहाँ पर बहुत सारी खिड़की लगी हुई है और पंखे लगे हुए है उपर छत दिखाई दे--